इस पिक्चर में हम देख सकते हैं अ जमीन को जोकि एक एंगल की साइड से ली गई ये फोटो है और हम दोनों तरफ देख सकते हैं कि बॉउंड्री सीमेंटेड --

और उसको काफी प्यारे तरीके से सजाया हुआ है फूलों से और वहाँ पर बिछी हुई कारपेट और वहाँ पर लगी हुई स अ रेड कलर की चेयर जिस पर बैठे हुए कुछ लोग भी नज़र आ रह हैं।

पिक्चर में हम देख सकते हैं। अ जनरल स्टोर्स को जो कि लोकल जनरल स्टोर होते हैं और उन्होंने अपने अपने काउंटर्स बना रखे हुए हैं दो और दोनों तरफ --

में हम देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स को जो कि ब्लैक कलर की चेयर पे बैठे हुए हैं औ वो उनके हाथ में कुछ पेपर वगैरा है। अ जैसे कि वो एग्जाम दे रहे हो किसी चीज का।

तो यहां पे हम वापस से एक खुले आसमान को देख सकते हैं। पेड़ों को देख सकते हैं बिजली की तारों को देख सकते हैं लंबे-लंबे पेड़ भी है और नीचे की तरफ खड़े हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं उस बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग की --

हमें रास्ते नजर आ रहे हैं और बिल्डिंग के विंडोज़ वगैरा दिख रही है। अंदर की तरफ ला जाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं गाड़ी खड़ी है वहां पे --

उसमें अ अ एडजस्ट फैन के लिए जगह छोल है बड़े-बड़े अम्म थोड़े वो जिस जिसमें फैन नजर आ रहे हैं हमें।

और नीचे वाले फ्लोर पे भी दोनों तरफ बोर्ड लगे हुए है। ब्लू ब्लू कलर के जिसपे सेम चीज़ लिखी हुई है सेम चीज़ प्रिंट है और बट नीचे से हमे कुछ बंद बंद --